पेड़ दिखाई दे रहा --

सामने के ओर बड़ा सा स्टेज सजा हुआ हे।

पास में एक शटर लगा हुआ है दुकान बंद है।

तीन छोटे-छोटे ईमारत दिख रहे हैं।

बोहोत सारे ट्रॉलियां दिख रही है।

यहां सामने की ओर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया दिखाई दे रहा है।

बैनर लगे हुए दिखाई दे रहे है।

लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हम देक सकते हैं।

खम्भे दिखाई दे रहे हैं। सामने की ओर एक बिल्डिंग का काम चल रहा है।

मूर्ति की दिख रही है --

आस-पास कुछ छोटे-छोटे पौधे लग रहे हैं।

पीछे बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रहे है।

सामने कुछ घास भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर पेड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं।